यह एक चित्र है इस चित्र में बहोत सी लकड़ियाँ दिखाई दे रही है और इसमें फूल भी नजर आ रहे हैं और इसमें पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक गुफा नजर आ रही है जिसमें कुछ लोग भी अंदर नजर आ रहे हैं और यहां अंधेरा सा हो रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है चित्र में कुछ लोग नजर आ रहे है और कुछ मूर्तिए भी नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है और उसके बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई नज़र आ रही है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक टॉय की दुकान है।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक कोचिंग नजर आ रही है।

यह एक चित्र है इस चित्र में कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है।

और इसके साइड में बहुत से गमले रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पे एक बोतल भी रखी हुई नजर आ रही है।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

यह एक चित्र है इस चित्र में दो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं और इसमें कुछ कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं और यह दुकान भी है घर--

यह एक चित्र है इस चित्र में एक घर बनता हुआ नजर आ रहा है और कुछ मिस्त्री भी नजर आ रहे हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में सब लोग खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं और इसके पीछे एक घर भी नजर आ रहा है।

यह एक चित्र है इस चित्र में तीन कछुए नजर आ रहे हैं और कुछ फर्शियां भी नजर आ रही हैं।

यह एक चित्र है इस चित्र में एक होटल नजर आ रहा है और इसमें--